यहां पर आप देख रहे है। दुकान दिखाई दे रही है इसमें बहोत सारे शैम्पू लांगे हुए है।

बहोत सारे तेल भी टंगे हुए हैं और एक फ्रीजर भी रखा हुआ है जिसमे बहुत सारा ठंडा भी रखा हुआ है।

एक प्लाजा है छोटा प्लाजा जहां पर सारे चारों तरफ लाइट ही लाइट लगी हुई है।

और यहां पर आप डेकोरेशन देख रहे हैं कितना खतरनाक लगाया हुआ है एक तरफ गोलगप्पे हैं।

और गोलगप्पा दूसरी तरफ बहुत सारा सामान है खाने का नाश्ते का टाइम हो चुका है और यहां पे लाइटें भी लगी हुई हैं।

यहां आप देख रहे है कुछ किताबें रखी हुई है कुछ खुली हुई रखी है और एक रजिस्टर भी है जिस पर कुछ लिखा हुआ है और उस पर एक पेन भी रखा हुआ है।

फूल बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और यहां टेबल पर बहुत सारी चीजें रखी हुई है और लाइटें भी लगी हुई है और ए_सी भी ल--

और दूसरी तरफ लगा हुआ है सिएट टायर का लॉन्ग लास्टिंग टायर्स लाइक --

और यहां पर आप देख रहे हैं शाम के वक्त का टाइम है और यहां पर आप देख रहे हैं कुछ पेड़ पौधे बड़े भी हैं कुछ छोटे भी हैं।

और यह एक कमरे में रखा हुआ है मुझे लगता है बॉल फेंकने का सिस्टम है यह मशीन द्वारा बॉल फेंकती है।

समझ में नहीं आ रहा है किसकी तस्वीर लगी हुई है और यहां पर लाइटें भी लगी हुई हैं और पंखे भी लगे हुए --

और इसके तरफ चारों तरफ कुर्सियां भी रखी हुई है जो बहोत अच्छी लग रही है और लाइटे भी बहोत ही प्रकार की लगी हुई है।

और ए_सी भी लगा हुआ है और पंखे भी लगे हुए हैं जो यहां पर बहुत मजा आने वाला है काफी एंजॉयमेंट होने वाला है।

और यहां आप देख रहे हैं लकड़ी के कुछ गुटके से दिखाई दे रहे हैं। जिन पर डिजाइन बनाया हुआ है।

और बहुत सारे यहां पर आप देख रहे हैं स्कूटी भी जा रही है और स्कूटर भी जा रहे हैं और मोटरसाइकिल भी जा रही है।

ये आप देख रहे हैं ये एक रेस्टोरेंट है जहां पर लोग पूरा मजा ले रहे हैं और कप्पल भी बैठे हुए हैं और एक लड़की भी बैठी हुई है।

हरा भरा घास भी खड़ा हुआ है। लगा हुआ है और हरे भरे पेड़ भी खड़े हुए हैं।

जैसे कि कार ट्रक बस कुछ भी लेकर जाएंगे बस गाड़ियों को बाइक को छोड़कर नहीं तो सभी चीज का टैक्स कटा है।

और यहां पर टैक्स देना पड़ता है यह सरकार की तरफ से बनाया गया है यहां पर फिलहाल अभी कोई नहीं दिखा दिखाई दे रहा है पता नहीं कौन से टाइम का यह फोटो --

और उधर एक स्कूटी भी खड़ी हुई है जो वाइट कलर की है ये काफी अच्छा नजारा है शाम के टाइम का--

यहां पर एक टैक्टर दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का और वाइट कलर का है और ये स्वराज कंपनी का है।

पांच सौ पैंतीस फ_ई और ये ट्रैक्टर काफी अच्छा है ये खेत को बहने का काम करता है और इसके पीछे टिलर बंधा हुआ है।

ये रात का नजारा है रात का फोटो है और ये काफी अच्छा हो--

यहां पर बहोत तादाद में बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई है और ये पूरा आनंद उठा रहे हैं।

यहां पर आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग सी नजर आ रही है जो बहुत ऊंची बिल्डिंग है।

और एक माला भी डली हुई है जो काफी अच्छी लग रही है और नीचे एक और फोटो भी लगी हुई है।